बहुत सारे इसमे मम तार-वार लगे हुए हैं ज-जहाज लगता हैं उड़ने वाला है जो की जहाज दिखने में बहुत अच्छा --

एक जगह है जो जहा की लग रहा है वे आम की बगीचे हैं ढेर सारे आम का पेड़ है और कुछ वस्तुओ का पेड़ है जो की बहुत ही अच्छे लग रहे हैं पेड़ ढेर सारे पेड़ है पेड़ के साइड में कुछ खेती भी लगे हैं मक्के-वक्के --

--अच्छा है मकान के साइड ये लाइन वाले तार गुजरे है मकान में एक खिड़कियां-खिड़कियां है बहुत जी अच्छी लगती है दिखने में माकन बहुत अच्छा है।

चित्र है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में है इसलिए बहुत अच्छा है के चारों और लाइट लगे हुए हैं मस्जिद के साइड से एक रोड गया हुआ है रोड पर एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहे है ।

एक मंदिर हैमंदिर में एक भगवान है भगवान है उसके अंदर एक भगवान है एक रोड है रोड के सामने दू खड़े है।

सींढ़ि बोहोत ही अच्छा लगता है देखने में दो चार पेड़ हैं जो कि लगता है मुरझाया हुआ है पत्ता सूखे हुए हैं पेड़ बहुत अच्छा लगता है देखने में पेड़ थोड़ा-सा मोटा है ज्यादा मोटा भी नी --